एक लड़का काली सफ़ेद शर्ट पहने साइकिल के ऊपर बैठा खड़ा दिखाई दे रहा है एक आदमी चलता हुआ।

हरे भूरे पीले रंग का ये महल की बिल्डिंगे दिखाई दे रही है नीचे पत्थर लगे हुए हैं।